यहाँ पे पार्टी लग रहा है और यहाँ पे आस-पास बहुत में बहोत अच्छा डेकोरेशन किया गया है फूल से सजाया गया है आस-पास में--

सुबह का समय है और यहाँ पे तीन लेडीज छत पर योगा कर रहे है और ये--

पौधे है आगे में पौधे है ऐसेही सजवाट के लिया लगाया हुआ है।

यहाँ से हवाईजहाज के माध्यम से लोग--

एक बाइकर खड़ी है और बाइक जैसा चलता है वैसा मिलेगा।

और एरोप्लेन में यात्राएं करता है और यहाँ पे बहोत सारे--

और चारो तरफ से ग्राउंड है और आस-पास में पेड़-पौधे लगे हुए हैं।